यहाँ पे बहुत ही अच्छे लग रहे है काफी ज्यादे अच्छे दिखने में और --

यहाँ पे भीड़ भी है बहुत ही भीड़ है।

कैश तो फोन पे कर सकते है गूगल पे कर सक --

क्योंकि बहुत ही आसानी होती है और सुविधा भी --

कितने अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही सुन्दर भी लग रहे हैं ।

तालाब है और तालाब में बहुत ही पानिया है और बहुत ही --

अच्छे दामों में भी मिलते है और अच्छे सामान भी मिलते है काफी जादे --

मॉल है दुकान बहुत सारे काफी दुकान हैं |

काफी अच्छे दिखने में लग रहे हैं ।

यहाँ टेम्पू भी खड़े हुए है बस वास भी खड़े हुए है क्यूंकि यहां पे --

ले सामान खरीदते हैं और काफी अच्छे दामों में न .

और देख सजावट भी है और बहुत ही ज्यादे --

जैसे जैसे की हमलोग यहाँ पे आते हैं और दिखा के जाते हैं | हमलोग की सुविधा होती है आने में और --

टेबुल और बहुत ही कुर्सियां लगे हुए है ।